ये एक मंदिर है मंदिर को यल्लो और ब्राउन कलर की पेंट की गई है और यहां पर अ लाइट सजाया गया है ग्रीन और अ--

अह पत्थर भी है और पत्थर पर रेड कलर पत्थर अ जोड़ा गया है और--

पीछे अह पहाड़ है पहाड़ को भी ग्रीन ग्रास है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है नीला और वाइट अह भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

ये एक मंदिर है मंदिर पर ऑरेंज और वाइट की पेंट लगी हुई है उस पर कुछ अ शेर भी अअअ--

आग किया गया है और वो पत्ते भी छुड़ाए गए हैं।

और यहाँ पर एक पेड़ है जो सुख गया है आसमान दिखाई दे रहा है और आदमी थोड़े खड़े हुए हैं।

और र यहां पे एक पेड़ लगा हुआ है और कुछ बाइक्स खड़े हुए हैं।

का बना हुआ है और आसमान दिखाई दे रहा है आसमान नीले कलर की है।

और यहां पर अ विजिटर्स भी अलाउड है।

और चॉकलेट की दुकान है ऊपर--

अंदर एक बुकेट रखा हुआ है और दो जार इधर वाइट एंड ब्लू जार रखे हुए हैं दोनों तरफ।

और बाहर पर अ टेबल फैन लगाया गया है।

और कुछ मोटर्स भी बाहर पड़े हुए हैं और ऊपर अ घर है उसका ऊपर टैंक लगा हुआ है।

पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां पर गाय खड़ा हुआ है यहां वायरिंग का भी खंबा खड़ा हुआ है।

और ये मिट्टी की जगह भी है यहां पर और आसमान दिखाई दे रहा है आसमान के कलर अ--

ये किशनपुर की रेलवे स्टेशन है यहां पर अह बहुत से बाइक और साइकिल खड़े हुए हैं एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है और पीछे पेड़ लगे हुए हैं।

और रर ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है नीले कलर की है और भीड़ कोई नहीं है यहां पे--

अह ये अ बहुत सारे गेटियों अ में पेड़ लगे हुए हैं और अ पी गार्डन पर भी पेड़ लगे हुए हैं और ग्रास भी है।

ये एक बस स्टैंड है ब अ लोग खड़े हुए हैं और बस चार खड़ा हुआ है।

और एक बैनर लगा हुआ है और आसमान दिखाई दे रहा है आसमान नीले कलर की है और ये बच्चान पर शीट डाला हुआ है।